अनमोल डेरी ये एक डेरी की दुकान है जिसका नाम अनमोल डेरी है।

यहाँ पे लोग पैसे की लेन-देन के लिये आते है।

और यहाँ पे लेने वाले लोग भी है।

मतलब अलग-अलग क्सकंपन्या की ऊपर जो है लाइट लहगी हुई है काफी प्यारा है।

ये जो है बच्चे लोग है ग्राफ्टिंग कर रहे हैं चार्ट पेपर पे।

दीवार जो है नी निचे लाल कलर से पेंट किया गया है।

छोटे-छोटे पेड़ है और ये छोटे पूजा कर रही है।